यहाँ काफी सारे कट्टे रखे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ काफी बड़ी छत दिखाई दे रही है। सामने एक लाइट लगी दिखाई दे रही है आस पास काफी सारी दुकाने हैं।

एक औरत खड़ी है और सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और यहाँ एक लाइट लगी दिखाई दे रही --

और यहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ काफी सारे बच्चे बेठे हुए हैं और यहाँ काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।